यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे पेड़ भी है और यह पार्क बहुत ही खूबसूरत देखने मे लगता है।

कुछ कपड़े के दुकान है। इलेक्ट्रिक समान के दुकान है जूते चप्पल की दुकान है और लकड़ी के समान के दुकान है।

यह एक हनुमान जी का मंदिर है।

बहुत लोग यहाँ पे रोज शाम को आते हैं।

लोग यहाँ इस चाय को पीने आते हैं और यह तंदूरी चाय पीने में काफी अच्छी लगती है ।